यह एक ए.टी.एम. मशीन है। उसके बगले में बगल में कचड़ा रखने के लिए रखा गया है। एल्युमीनियम का बर्तन है। एक गेट है। जिसमें ताला लगी हुई है। ब्लू कलर का उसका डिस्प्ले है।